केनरा बैंक के बगल में एक बहोत बड़ा पॉवर जनरेटर रखा हुआ है।

गेट भी हरा रंग का है और गेट दोनों पिलरो से टिका हुआ है।